और यह बहुत ही अच्छी जगह है ।

और बच्चे बहुत अच्छे तरह से--

यहाँ जूते की दुकान है और कपड़े की दुकान हैयहां पर दो लोग बैठे हुए हैं।

ये एक बहोत ही सुंदर गार्डन है इसमें गमले रखे गए फूलों के।

ये वकील का दफ्तर है।

एक छत लगाई गई है चादर की--

यह बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग हैइसमें--

यहां पर एक बिस्तर लगाया गया है और यहां पर लाइट्स है।

गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे--

घोड़े के ऊपर झांसी की रानी सवार है।

और यहाँ इसके सामने एक--

ये दुकान है दुकान में आइसक्रीम दिखाई दे रही है यहां फ्रिज भी लगा है।

सामने पर्स रखा है और चश्मा भी है कैंची भी है स्प्रे वाली बॉटल भी है।

और इसने मुंह में कुछ वाइट लगाया हुआ है।

एस_बी_आई का बैंक है ए_टी_एम भी है।

पर उसमें खिड़की में शीशे लगे हुए हैं।

दो लोग दो तीन लोग कुछ काम कर रहे हैं।